यहाँ एक दीवार पर काफी सारे फोटोग्राफ हैं जो की छोटे-बड़े साइज में लगे हुए हैं ब्लैक एंड वाइट शेड में हैं।

यह एक अ पैकेट है जिसमे अलग तरह के क जानवर है जो की सिल्वर कुछ अ व्हाइट कलर में है।

झाड़ में भी धूप आ रही है लकड़े है लकड़े के ऊपर काफी सारे कॉस्ट्यूम्स रखे हुए हैं और आसमान नज़र आ रहा है झाड़ नज़र आ रहा --